तीन पेड़ हैं।

इसका गेट लोहे का है जो कि बड़ा है और उसमें ताला लगा हुआ है।

यहाँ रोड पर एक ठेला लगा हुआ है। उस पर पेठा और पटौवा बिक रहा --

बहोत सारी बसें खड़ी हैं। यहाँ पर पोल है। उसमें से तार गया है।

यह एक् कमरा है। इस कमरे में चार कुर्सी रखी हुई हैं।

और सोफ़े पर सोफ़े के पास में चाहे उस मेज पर फूल और --

पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर सफेद रंग का है। उस पर लिखा है--

और एक पोस्टर लगा है जिसपर राधिका सिंथेटिक्स लिखा हुआ है।

थेरेपी क्लीनिक एंड डॉक्टर सीमा पांडे का है।